तीन लड़का खड़ा हुआ है और एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है और--

साइट में भी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां में एक छोटा गाड़ी जा रहे रास्ता में।

ऊपर पोस्टर में एम_एस अरुणाचल ड्रग हाउस --

एक फ्रीजर में है आइसक्रीम पानी बॉटल जूस और सब और अलग में ही पैकेजेज इन साइड में ड्रिंग्स वाटर --

गार्डन में पेड़ के नीचे--

फ्रिज रेड ब्लैक ब्लू ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है दोनों तरफ।

ग्राउंड का अंदर में रन जंप कर रहे--

टेबल का वहा में दो फ्रेम रखा है और साइड में शिशा का अंदर गन रखा हुआ है।

दो व्हाइट फ्लावर पॉट है काउंटर का सामने में--

एक रूम का अंदर बहुत सारा चेयर टेबल दिखाई दे रहे है।

में लोग पीछे में है और बीच में तीन बिशप खड़ा होके कैंडल जला के और पीछे में क्रॉस में आह जीजस है।

भी दिखाई दे रहा है और साइड में धान उग रहा है।

का बाहर में गाड़ी व्हाइट गाड़ी और आदमी लोग खड़ा--

नीचे में कम टू लर्न एस्टेब्लिश नाइनटीन फोर्टीयेट गो टू सर्वे लिखा हुआ है।

में दो आदमी है एक बेचने वाला और एक लेने वाला।